हमें यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें हरियाली दिखाई दे रही है घास लगी हुई दिख रही है।

हमें यहाँ पर बहुत सारा झंडे लगे हुए दिख रहे हैं जो रेड कलर के हैं येलो कलर के हैं व्हाइट कलर के हैं।

एक बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है यह बिल्डिंग वाइट कलर से पेंट की गई है।

सामने दो गुलदस्ते लगे रखे हुए दिख रहे हैं रेड कलर की चेयर लगी हुई हैं।

और इसको बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है बलून से रेड और वाइट कलर के बलून चार तीनों ओर लगे हुए हैं।

उ और इसमें हमें लाइटिंग भी लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं ये पार्क देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और एक डंडा सा लगा हुआ है उसे हमें एक तार भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमें --

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की चार-पांच मॉल्डिंग अम मंजिल बिल्डिंग है जो वाइट कलर से पेंट की गई है।

हमें सामने बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिस पर लिखा है लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी ।

सभी बच्चे या कोई ड्राइंग बनाते हुए देख रहे हैं कुछ मास्क भी लगाए हुए हैं।